यह एक चौक है जिसमें चौक के बीचो बीच एक टैंक लगा हुआ है।

अंदर एक घोड़ी टाइप जो पौड़ी होती है वो खड़ी हुई है।

जहां पर कुछ लोग खड़े हैं।

साइड में सोफा पड़ा है दो चेयर्स पड़ी है और बीच में एक टेबल है।

ये एक बालकनी सी बनी है जहां बहुत सारी घास बनी हुई हैं गमले लगे हैं गमलों में कुछ पौधे हैं।

ये एक स्टेट बैंक है जो की बजार में खुला हुआ है।

सामने बहुत सारी चेयर्स पड़ी हुई है।

नीले रंग के बॉक्सेस भी पड़े हुए हैं।

जहां पर सामने दो टेबल लगी हैं।

टेबल के ऊपर दो कंप्यूटर पड़े हुए हैं।

ये एक घर लग रहा है।

एक फोटो में एक कार्टून बना है जिस पर लड़का फुटबॉल खेल रहा है।

ये एक कैफे लग रहा है।

ऊपर साइड में एक पुल बना हुआ है।

ये एक पुराना खंडर लग रहा है।